उसके पास भी कुछ समान बिखरा हुआ है पड़ा हुआ है।

यह ये दो चेयर दिख रही है उसके बाद आ काल सुभे--

इस पे लाइट भी दिख रहे हैं छत के ऊपर और लाइट के बाजू में कुछ भाग उसका टूट गया है।

उपर छत को बहोत सारी लाइट लगी हुई है और या सामने एक लड़की के--

यहा पर एक हाथी है और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और नीचे कुछ दुकानें हैं उसकी सटरे बन्द हुई बंद है और ऊपर एक बहोत बड़ी--

यहां पर बहुत सारे और अं औरतें--

और पीछे चार पांच छ पांच गाड़ियां खड़ी हुई है और पीछे बहुत बड़ा व्हाइट बंगलो है पूल है बहुत बड़ा।

ये तो बहुत ही आलीशान नजारा है बहोत सारे लोग देख रहे--

औ एक आदमी नीचे झुका हुआ है और एक ब्लैक कलर का--

ब्लू कलर के और कुछ ऑरेंज कलर के दिख रहे--